और वो सर्टिफ़िकेट धरे हुए हैं और पीछे कोई बड़े लोग खड़े हुए हैं और साइड में खंबे लगे हुए हैं।

और बाजू में पेड़ लागे हुए हैं उस साइट बना हुआ है।

इस फोटो में लाइट की केबलो की वजह से बहुत गंदा नजारा दिख रहा है।